मुझे इस फोटो में बोहोत सारी तारे दिखाई दे रही है।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

मुझे इस फोटो में पिंजरा दिखाई दे रहा हैं।

मुझे इस फोटो में जाली दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में दरवाजा दिख रहा है।

मुझे इस फोटो में लाइटर दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में फूल दिखाई दे रहे हैं।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

सिद्धीविनायक मेडिकोज का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

एक पुरुष दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में बहोत सारे गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में झूले दिखाई दे रहे हैं।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

मुझे इस फोटो में बहोत सारी इमारतें दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।